अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग है बाहर कुछ गाड़िया खड़ी है कुछ कार खड़ी है बिल्डिंग बहुत बड़ी है बाहर पेड़ पौधे लगे हुए लोग आ जा रहे है।

बहुत बडा मंदिर है बहुत सुंदर दिख रहा है अलग अलग फ्लोअर पे अलग अलग भगवान के फ़ोटोज़ है अलग अलग भगवान के मंदिर है जोकी बहुत खूबसूरत है लोग यहा देखने के लिये आए है।

काली मता की प्रतिमा बहुत ज्यादा सुंदर है मंदिर बहुत काफी सुंदर दिख रहा है आसपास मे छोटी माताए बैठी हुई है माताके आगे दिया जल रहा है ज्योत जल रही है माता के आगे प्रशाद रखा गया है।

यह फ़ोटो गणेश भगवान की झाकी की है जिसमे गणेश भगवान को बिठाया गया है महाराष्ट्र कि फ़ोटो है गणेश भगवान की मूर्ति बहुत ही सुंदर दिख रही है।

यह फ़ोटो झरने बहने का है झरना बह रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है आस-पास मे बड़े-बड़े पैड है झरने मे सफेद पानी बह रहा है आस-पास मे बड़े-बड़े पत्थर है।